यहां पे कुछ मुझे दीवार दिख रही है और कुछ पोस्ट में लिखा हुआ दिख रहा है अंधेरा हुआ है कुछ ताला दिख रहा है।

यहां पे कुछ मकान रखे हुए है धुअर उड़ रहा है झूमर लगा है और छत दिख रही है।

यहां पे मुझे होटल दिख रही है दुकान दिख रहा है शटर दिख रही हुई है इंसान दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे हुए हैं।

दिख रही है लोहा दिख रहा है बादल काली है ये भी दिख रहा है गेट दिख रहा है।

इसके पैर में दिख रहे हैं गाड़ी दिख रही है पार्लर देख रहा है दीवार दिख रही हुई है।

यहां पे मुझे गैस टंकी दिख रही हुई है फैन लगा दिख रहा है मकान दिख रहा है गद्दे रखी हुई दिख रही है।

कि यहां मैं देख सकता हूं गैस टंकी लगी हुई है फैन लगा हुआ मकान दिख रहा है बल्ब दिख रही है।

यहां पे कुछ मशीन दिख रही है एक चेयर दिख रही है।

यहां पे मैं देख सकता हूं कि मकान बना हुआ है और लोग जाते हुए दिख रहे हैं।

अह डब्बा पे कुछ लिखा वो भी दिख रहा है गार्डन दिख रहा है बल्ब दिख रही है मेरे को।

और बाजू में बिल्डिंग लग लगी हुई है वो भी दिख रहा हमें--

यहां पे मुझे झरना दिख रहा है दो व्यक्ति खडे दिख रहे हैं पेड़ पौधे दिख रहे हैं मकान दिख रहा है।

यहां पे मैं देख सकता हूं मकान बना हुआ है और--

और बाजू में पोस्टर देख सकता हूं बाजू में गाड़ी खड़ी हैं वो भी देख सकता हूं।

चित्र बना हुआ है वो भी देख सकता हूं और मा--

यहां पर मैं देख सकता हूं एंबुलेंस खड़ी हुई है और बाजू में एक और एंबुलेंस खड़ी हुई है वो भी देख सकता हूं कुछ डब्बे रखे हुए हैं।